अलसो ढलता हुआ दिखाई दे रहे है। बहुत ही अच्छा दृश्य है।

थिएटर है। थिएटर के अंदर का दृश्य नजर आ रहा है। यहाँ पर --

यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है देखने से ऐसा लग रहा है कि यह कोई सैलोन हैं।

यहाँ पर टी.वी. लगा हुआ है और यहाँ पर जो कलर है ग्रीन कलर का है। पेंट किया गया है। बोहोत ही खूबसूरत दिख रहा है।

बोर्ड लगा हुआ है थ्योरी वन लिखा हुआ है यहाँ पर।